ऊपर पिंक एंड वाईट कलर की माला है और निचे भी कुछ फुलस है और पिंक कलर का दरबार सजा हुआ है। ये काफी सुन्दर कान्हा जी की वो है।

ये बुकों का कुछ स्टॉल है। यहाँ पे काफी सारी बुकें हैं। अलमारिया है और इस में दो लाइटे है। एक बड़ी वाली ट्यूब है और इन्होंने इसमें सिल्वर कलर का पेंट किया हुआ है।

यहाँ पर काफी सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक आदमी जा रहा है और एक बस खडी हुई है ब्लू कलर की एक वाइट कलर की कार है और सामने एक होटल है।

यहाँ पे नीचे ब्राउन कलर की मिट्टी बिछी हुई है। यहाँ पे काफी जने घूम रहे है। ये मेला है।

यहाँ पर पांच लड़कियां नित्य-नित्यम् कर रही है। पीछे भोले जी नाग नीचे ग्रीन कलर के कार्टन बिछे हुए है।